मस्जिद में लाईट जल रहा है। मस्जिद बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।

इसका उद्घाटन इधर ही किया गया है।

डेस्क बेंच लगा हुआ है।